इस चित्र में हमें एक दुकान में रखी हुई ड्रेस दिखाई दे रही है जो की येलो रंग की है।

इस चित्र में हमें एक दुकान दिखाई दे रहा है।

और हमें आगे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ये रात का समय है और लाइट भी बली हुई दिखाई दे रही है।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

बाहर हमें एक नील रंग की बाइक दिखाई दे रही है।

चित्र में हमें एक दुकान दिखाई दे रहा है।

दुकान में हमें कुछ सामान देखने को मिल रहे हैं।

पट्टियां हमें दिखाई दे रही है और आसपास में हरे भरे बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

स्टूल का रंग लाल है और आगे एक बैग भी लाल रंग की रखी हुई है।

में कुछ व्यक्ति खड़े आगे खड़े हो के देखते हुए नजर आ रहे हैं और चार व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार ऑरेंज पिंक से पेंट की गई है और फ्लोर हमें नीले रंग का दिखाई दे रहा है।

दीवार में कुछ तितलियां भी लगी दिखाई दे रही हैं।

उसने नील रंग की शर्ट और बाहर से एक ग्रे कलर की स्वेटर पहनी हुई है।